मिट्टी नज़र आ रही है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो चलते हुए नज़र आ रहे है और आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है।

फिश मार्केट नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ मछलियां रखे हुए है वहां पर सैलर्स है जो वहां बैठे हुए है।

एक बड़ी-सी जगह दिखाई दे रही है जहां पर स्तंभ दिखाई दे रहे हैं बाहर से कुछ बिल्डिंगस दिखाई दे रहे है।